सामने एक बड़ी सी नदी नजर आ रही है जिसका जल बहोत ही साफ एवं स्वच्छ है नदी का बहाव बहोत ही तेज है नदी के साइड में बड़े बड़े पहाड़ और पहाड़ के ऊपर कुछ घर भी नजर आ रहा है।

सामने एक छोटी सी रोड नजर आ रहा है रोड के साइड में बहोत सारे लाइन बाई लाइन फोर विलर खड़ा हुआ नजर आ रहा है रोड के दोनों तरफ हरे हरे बड़े बड़े पेड़ पौधे नज़र आ रहे हैं।

मैदान के सामने एक बड़ा सा गेट भी बनाया गया है एंड चारों तरफ हरे हरे बड़े बड़े पेड़ पौधे भी नज़र आ रहे हैं।

सामने एक बड़ा सा पहाड़ नजर आ रहा है जो कि हरे-हरे पेड़ से पूरा ढका हुआ नजर आ रहा है पहाड़ के साइड में एक छोटी सी नदी भी नजर आ रही है।

अन फैक्ट्री का जो छत है वो एडविस्टर की है एडविस्टर की छत में बहोत सारे लाइटें एंड पंखा लगा हुआ है फैक्ट्री के अंदर का लाइट जलता हुआ नजर आ रहा है।